ये हम देख सकते है कि सामने एक जो है मंदिर है और मंदिर के बगल में भी सड़क है ये सड़क जो है आगे की तरफ जाकर और बगल में इसके जो है बिजली का टावर भी है और ऊपर खुला आसमान --

देखने में तो ये बड़ा काफी और किसी शायद से बड़ी सी बिल्डिंग में है बगल में इसके जीने भी है जो जीने ऊपर की तरफ जाता है।